और गया जंक्शन काफी बड़ा जंक्शन है और काफी बड़ा एरिया में भी इसका स्पेस है और काफी साफ-सुथरा भी और ये रात का समय है और ये लाइटिंग किया हुआ है।

प्रशासनीय एवं जगजीवन महाविद्यालय गया है जो की --